एक छोटा सा पेड़ उगा है जो कि पूरे हरा कलर की हैं।

रेड कलर का छोटा छोटा टाइल्स लगा है और--

और मैदान में एक बस दिख रहा है।

यह अपना छत्तीसगढ़ का डोंगडगढ़ का फोटो है जोकि यहां--

और इसमें एक कार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पेंटिंग हुआ है व्हाइट कलर की टाइल्स लगी है।

ऊपर से पानी गिरता हुआ झरना दिखाई दे रहे है।

वाटर का फॉलिंग हो रहा है।

यहां बहोत सारे मशीन दिखाई दे रहे है।

काफी पुस्तकी दुकान है जो कि इसको इस्टीशनरी कहा जाता है।